और ये एक पेट्रोल पंप में है प पेट्रोल भरवा रहे हैं और--

ये एक पार्क है यहां पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

बच्चे इस पार्क में साइकिल चला रहे हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं और पार्क के पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए।

ये फ्लाईओवर के नीचे लोग खड़े हैं ऑटो का वेट कर रहे हैं और गाड़ियां बसेस जा रहे हैं।

और लैंप वगैरा है ऊपर और दीवार में फोटोग्राफ्स वगैरा रखी हुई हैं और--

यह एक चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल की फोटो है यह एक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल --

जहां पे अभी दुकाने काफी दुकाने बंद है और पार्किंग भी खाली है और एक बाइक वाला--

काउंटर टेबल के अंदर भी ज्वेलरीज है और ए_सी लगा हुआ है।

यह एक चंडीगढ़ में मार्केट का ब्लॉक है।

बाकी बहुत सारी गाड़ियां पीछे खड़ी हैं।

मंदिर थोड़ी ऊंचाई में है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

जहां पे दो तरह के ग्रेप्स पड़े हुए है।